ये पानी का पुल है दोनों तरफ भी समंदर है पानी के पुल पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं छोटे बच्चे--

इधर मट्ठी है इधर अच्छा नहीं है उधर का साफ सुथरा है।

जलेबी है ट्राई है न्यूजपेपर बिछाया गया है बड़ी एक ट्रे में रखा हुआ है सब वैराइटीज की मिठाई रखी गई है।

हिंदूस के मूर्तिज हैं बहुत सारे मूर्ति हैं कलर कलर में--

यहां पर भी सामान है टेबल है बॉल है येलो कलर की।

एक जंगल है जंगल में बहोत सारे--

स्काई है बड़े बड़े प्लांट्स हैं छोटे हैं ग्रीन हैं।

ऊपर भी एक मंदिर है चर्च है स्काई दिख रहा है बड़े-बड़े घर है आजू-बाजू में वायरिंग है ऊपर--

पिज़्ज़ा खा रहे हैं पिज़्ज़ा शॉप है यह लाइटिंग लगी हुई है बाहर बाइक है इधर भी बाइक है इधर भी बहुत सारे लोग बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं एक--

और छोटे छोटे बड़े बड़े प्लांट्स बहोत सारे ल रखे गए हैं।